और वह ट्रक से सिलेंडर को कुछ इस प्रकार गिर रहा है कि--

यह एक खेत का दृश्य है इस दृश्य में दिखाई दे रहा है कि एक दो खेतों के बीच एक मिट्टी का रोड है।

इस दृश्य में दिखाई दे रहा है कि यहां पर कुल बारह बड़े डी_जे बॉक्स --

और इसमें बहुत सारे लाइट भी लगे हुए हैं जो की रात में चमकते हैं।

इस घर के बगल में पुराने जवाने का मिट्टी का घर है।

जो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और इस मैदान में एक मोटरसाइकिल लगा हुआ है।

और सामने टी_वी है इस रूम के छत पर फाल्स सीलिंग किया हुआ है।

इस रेस्टोरेंट में दो ए_सी भी दिखाई दे रहा है।

पर एक आदमी लेटा हुआ है जिसके घुटने में चोट लगा हुआ है।

इस दुकान के बाहर एक वाइट कलर का गाड़ी भी लगा है।

बहुत अच्छे डिज़ाइन के है।

यहां पर पानी भी आ रहा है।

इस मंडप में बहुत सारे फूल लगाए गए हैं।

क्या एक रोड का दृश्य है इस रोड पर किसी प्रोग्राम के लिए बहुत सारे टेबल लगाए गए हैं।

यह एक रोड का दृश्य है यहां पर अभी रात हो रहा है।

और अभी बहुत सारा लाइट जला हुआ है।

इसी फर्नीचर दुकान के बगल में एक मोटरसाइकिल भी है।

इसका डिजाइन बहुत ही अच्छा है और उस पे शीशा भी लगा हुआ है।

इस दृश्य में दिखाई दे रहा है कि यह घर का कलर पीला है।

और इस घर के सामने छोटे छोटे पौधे भी लगाए हुए हैं।